और ये लग रहा की क्रिसमस मानाने के लिए आए हुए है और यहाँ पर बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया है क्रिसमस डे --

और एक आदमी जो बाहर से देख रहा है और यहाँ पे हमको बर्तन दिख रहा है और कुछ मशीन दिख रहा है एक बे --

ये यहाँ पे इस इमेज में मेरे को एक आदमी दिख रहा है और एक आ ये आदमी लग रहा है कि जैसे की फोटो ले रहा है।

और एक आदमी दिख रहा है जो की लग रहा है किसी को देख रहा है और यहां पे --

इस इमेज में मेरेको एक बिल्डिंग दिख रहा और ये बिल्डिंग एम.सी.आई.टी.आई. का है और आई.टी.आई. में इंजीनियरिंग की तैयारी होती है।

ये पढ़ने का संस्था है आई.टी.आई. ।